का अनुसार यख मा जी जु छा एक बड़ी बारीकी इमारत करा यख मा जी ये इमारत देखण मा जी कुई सरकारी इमारत छा लगण लगीं यख मा जी ई पर नारंगी अर हरयूं रंग छा होयुं।

यख मा जी हरयूं भरयुं घास करा यख मा जी सामणि इमारत दिखेणी यू कोई विद्यालय करं लगण लग्युं यख उंडे मा जी एक टीन कू छपर दिखेणु पिछाड़ी मा जी हरा भरा डाला छिन।

चित्र का अनुसार यख मा जी एक नदी कर छ दिखेण लगीं यख नदी का बिच मा जी एक पुल कर छ बणयुं यखम लोहा की तार कर छन लगीं लोहा की रॉड लगीं।

पुल मा जी कुछ बिमकर छन दिखेण लग्यां यख मा जी एक क्रेन छ दिखेण लगीं यखम कुछ लोग भी छन यख फणा टिन का छप्पर दिखेण लग्यां यख फणा कुछ हरयां-भरयां डाला भी छन।

चित्र का अनुसार यख मा जी जू छ एक गाड कर छा दिखेण लगीं यख मा जी गाड काफी तेज मात्रा मा जी छ बगण लगीं।

यख मा जी हरयूं भरयूं मैदान करा यखम हरयूं भरयूं घास करा दिखेणु पिछाड़ी मा जी हरयां भरयां पहाड़ छन हरयां भरयां डाला भी छन।